और आदम का किनारा भी अच्छा लग रहा है और बीच का छोटा --

और पूजा कर रहे हैं बाबा वहाँ पे | भगवान का अच्छा से सुंदर लग रहा देखने में ।